गोदाम का सामने बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

ऊपर मे वायर भी नजर आ रहा है इस पिक्चर में हमें--

सामने में बहुत सारा लोहा बड़ा बड़ा नजर आ रहा है।

वॉटर टैंक का सामने में पाइप भी नजर आ रहा है व्हाइट कलर का।

तस्वीर में हमें एक दुकान दिखाई दे रहा मार्केट एरिया --

घर में ए_सी फैन भी दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में।

इस घर में बहुत सारे खिड़की और दरवाजा भी नजर आ रहा है।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

सामने में एक गाड़ी दो ठो भी दिखाई दे रहा है।

वीवो लिखकर भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

इस पिक्चर में हमें कैमरा एंड म्यूजिक लिखकर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक कॉलेज दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमें मेमोरी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है मेमोरी का सामने बहुत सारा फूल भी नजर आ रहा है।

सामने में पहाड़ भी नजर आ रहा है।

और डिस्को लाइट भी दिखाई दे रहा है के अलग अलग कलर का।

लोहा भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमें।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारा चेयर नजर आ रहा है।

सामने में एक लाइट पोस्ट जला हुआ भी दिखाई दे रहा है।

कोने में स्कूटी भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा।

इस पिक्चर में हमें फोन नंबर भी नजर आ रहा है।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

किताब में रस्सी बांध कर भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में।

बहुत सारा कलम भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें फ्लोर में वाइट कलर का प्लास्टिक भी नजर आ रहा है सोफा के नीचे में।

बहुत बड़ा लोहा भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में।

इस तस्वीर में हमें खुला मैदान दिखाई दे रहा है।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

सामने में बहोत सारा थर्माकोल भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में।

इस तस्वीर में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा हैं।

इस पिक्चर में हमें तबला भी दिखाई दे रहा है।

रास्ता में इंसान भी दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में हमे।

बहुत सारा चेयर दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में।

इन्वर्टर और बैटरी भी नजर आ रहा है इस तस्वीर में हमें।